यह जो आप दृश्य देख रहे है यह किसी पहाड़ के से पे बनाया हुआ दृश्य हैं क्यूँकि इधर जो खाई है और जो लू लाॅड के बंधे से लू लो लोडिंग किया गया है और यह दृश्य जो है बहोत ही खुशी का देखने में अच्छा लग रहा हैं ।